ऑरेंज कलर की और उसके पीछे बोहत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं एक स्टूल रखी हुई दिख रही है ।

एक क्यू.आर. कोड रखा हुआ है और सामने एक बड़ा सा बैनर टंगा हुआ है।

एक बड़ा सा खम्भा दिखाई दे रहा है पेड़ दिख रहा है दूर एक घर दिखाई दे रहा है।

मुझे सामने एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उसमे गेट लगा हुआ है |

तीनों थालियों में चम्मच रखी हुई दिखाई दे रही हैं साइड में बोटल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक आटो रखी हुई दिखाई दे रही है | आटो के साइड में एक आदमी है |

एक लड़की दिखाई दे रही है उसकी गोदी में एक अखबार रखा हुआ है।

पीछे के कॉलम में भी बुक रखी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर लाइट दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है वहां पर दो माइक रखी हुई है बहुत सारे लोग बैठे हुए दिख रहे है।

और कुछ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस बाँस डले हुए दिखाई दे रहे है लकड़ियाँ दिखाई दे रही है।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

उसकी खिड़किया दिखाई दे रही है पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है गमला दिखाई दे रहा है।

एक मुझे सफ़ेद कलर का बड़ा सा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे --